ये जगह ये चित्र देखो कितना सुन्दर भी है और इस दिवाल पे देखो कितने सुंदर से चित्र बने हुए --

ये ब्यूटी पार्लर की दुकान है और इस ब्यूटी पार्लर पे भी लोग बाल कटवाने भी आते हैं।

यह दुकान काफी सुन्दर भी है और इस दुकान में हर चीज भी मिल जाती है और काफी सुन्दर भी है यह दुकान देखो।

पंजाब नेशनल बैंक इस बैंक में लोग पैसे निकालते हैं और डालते भी हैं।

ग्राउंड की फ़ोटो ये बोहोत ही सुन्दर ग्राउंड लग रहा है और बोहोत ही अच्छा है।